यहां पर दीवार पे एक घड़ी और एक पेंटिंग लग रही है।

वो घंटी के पास में फूलों की माला--

यह एक महजिद है इसके दोनों साइड दो दुकाने है।

इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं।

उसके अंदर के पेड़ भी खड़ा हुआ है।

यहां पर एक प्रोग्राम हो रहा है।

इसमें आसपास में पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

इसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है।

यहां कई सारे डिब्बे हैं और इन डिब्बो का नीला रंग--

और यहां पर बहुत सारी भीड़ लग रही है।

सब भंडारा करवा रहे हैं और भंडारा चल रही है।

वही पास में एक कुर्सी रखी हुई।

यहां पर कई सारी दुकानें लगी रही है।

यह एक मूर्तियों की दुकान है।

इस दुकान में बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां रखी--

यह एक बहुत प्यारी एजेंसी है।

यहां पर ये दोनों मां बेटे पूजा कर रहे हैं।